लग रहा है इस तस्वीर के अंदर सारे दीये जल रहे हैं।

धरमशाला की नज़र आ रही है इस तस्वीर के बाहर कुछ महिलयाँ खड़ी हुई हैं।

तस्वीर के अंदर एक शख़्स खड़ा नज़र आ रहा है जो की अपने हाथों को ऊँचा करा हुआ है।

से अपनी वरदीश कर सकते है ये लोग।

इसके अंदर एक व्यक्ति खड़ा है जो कि व्यापारी है।